ये एक सलून है जिसका नाम थ्री सिक्सटी सलून है ये एक फैमिली सलून है जिसमें हर एज ग्रुप के लोग सर्विसेज ले सकते हैं।

जो वुडन और ब्लैक कलर थीम का एक क्लासी लुक दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जहां में वन बाइट लिखा गया है ये किसी रेस्टोरेंट या कैफे हो सकता है।

उसके साम उसके नीचे बहुत सारे शटर हैं जो छोटे छोटे दुकानें का इंडिकेशन दे रहा है।

और घर बनाने के लिए बुर कब आएगा।

किसी या इंडियन ब्रिटिश आर्किटेक्चर से जुड़ा हो सकता हैं।

ब्लू पिलर्स और व्हाइट सेलिंग का कंबीनेशन यहां पर एक क्लीन और ऑर्गेनाइज लूक दे रहा है।

यह रंग ज्यादातर कार या बाइक की रिपेंटिंग और तजब के लिए यूज़ होता है।

उस साइड गार्डनिंग या फार्मिंग के लिए यूज होने वाले टूल्स भी नजर आ रहे हैं।

ब्लू और वाइट पर्दे के साथ सुंदर डेकोरेशन की गई है जो शादी या रिसेप्शन में न्यू का फील दे रही है।

शहर का रास्ता है पीछे अवंथि डिग्री कॉलेज का बोर्ड साइन है और उसके दाये की तरफ एक वेलकम गेट जहां पे लिखा हुआ है --

यहां पे बच्चे अपनी देख के सुधार सकते हैं।

ये एक रंग मंच का दृश्य है जिसमें एक लड़का नंगे पांव एक बड़ा सा लाल का स्टेज में नाच रहा है।

इनमें बहुत सारे दरवाजे हैं जो केबिन जैसे बने हुए है।

इन बच्चों ने मास्क पहना हुआ है।